शाम के समय किनारे पर कई पेड़ पर पानी गिरने का दृश्य--

देखने में बहोत बढ़िया लग रहा है और अंगूर भी है काला अंगूर और चीज़ भी रखी गई है अति सुन्दर लग रहा है देखने में।

डोरी रखा गया है लाल डोरी है रिंग लगाया गया है इ दुकान है किस चीज़ का।